यह दो या तीन होटल दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं।

मंदिर की तरफ जा रहे हैं और वह चिट्टे रंग के ऊपर चलकर जा रहे हैं।

इस तस्वीर में हम देख सकते--

ऑरेंज कलर के कर्टेन लगे हुए है।

जोकि घास के ऊपर रेंग रहा है।

यहां पर काफी पब्लिक है और यह फूली एंजॉय कर रहे हैं अपने मौज --

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं।

जो की है पिज्जा हट केएफ़सी --